और उसके अंदर काले कलर के शीशे--

जोकि एक कार रिपेयरिंग शॉप के अंदर की हैं।

जहाँ पर एक लाल कलर की कार रिपेयर हो रहीं हैं।

तस्वीर खींची गई है जो की एक बालकनी --

येलो रंग से रंगा हुआ है।

इस चित्र में हम देख सकते है कि यहां पर एक हिरण खड़ी हुई--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

और पास में अलमारी भी रखी हुई है।

खींची गई है जिसमें की एक जे_सी_बी सामने की तरफ--

देख सकते हैं यहां पर एक केले का चित्र लिया गया है।

जहाँ पर कई सारे लंबे लंबे पेड़ हैं आसपास झोपड़ियाँ भी हैं।